synfig का उपयोग करके animate a toy train के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम उस टॉय ट्रेन को एनीमेट करना सीखेंगे जिसे हमने पहले बनाया था
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
हमारी train synfig फाइल खोलते हैं
कृपया अपनी train synfig फाइल को खोलें जिसे आपने अपने सिस्टम पर सेव किया था
आइए एनीमेशन शुरू करते हैं
engine group layer की ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें
किसी भी wheel group layer पर राइटक्लिक करें
star लेयर चुनें
पुनः राइटक्लिक करें और new layer पर क्लिक करें
फिर transform पर और उसके बाद rotate पर क्लिक करें
अब पहिए पर rotate effect लागू कर दिया गया है
एंकर पॉइंट को पहिए के केंद्र में ले जाएं
animation panel में turn on animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
current frame बॉक्स में 24 टाइप करें
parameters panel पर जाएँ
amount parameter के मान पर डबलक्लिक करें और मान को बदलकर 360 कर दें
ध्यान दें कि time track panel पर waypoints बन गए हैं
2 waypoints के बीच time cursor पर क्लिक करके ड्रैग करें और पहिए के घूमने की जाँच करें
ctrl + s दबाकर फ़ाइल सेव करें
आइए अब इस rotation इफ़ेक्ट के लिए टाइम लूप बनाते हैं
rotate effect layer पर राइटक्लिक करें और new layer पर क्लिक करें
फिर other पर और उसके बाद time loop पर क्लिक करें
parameters panel में only for positive duration के चेकबॉक्स पर निशान लगाएँ
फिर आइए हम सभी पहियों पर rotate & time loop इफ़ेक्ट लगाते हैं
इसके लिए shift key का उपयोग करके दोनों इफ़ेक्ट लेयर चुनें
और लेयरों को कॉपी करने के लिए ctrl और c कीज़ दबाएँ
अब wheel1 group folder पर राइटक्लिक करें
लेयरों को पेस्ट करने के लिए ctrl और v कीज़ दबाएं
सभी पहियों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं
अब टॉय ट्रेन के सभी पहियों पर रोटेशन इफ़ेक्ट लगा दिया गया है
ctrl + s दबाकर फ़ाइल को एक बार पुनः सेव करें
आइए अब ट्रेन को एनीमेट करते हैं
rail के अलावा सभी ग्रुप लेयर चुनें
उन्हें एक साथ ग्रुप करें और ग्रुप लेयर को train नाम दें
सुनिश्चित करें कि time cursor शून्य फ्रेम में है
शिफ़्ट कीज़ का उपयोग करके ट्रेन को दायीं ओर canvas से बाहर ड्रैग करें
time cursor को 100वें फ्रेम पर ले जाएं
shift key का उपयोग करके ट्रेन को बायीं ओर canvas से बाहर ड्रैग करें
turn off animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
ctrl + s दबाकर फ़ाइल सेव करें
आइए अब एनीमेशन को रेंडर करते हैं
इसके लिए file पर जाएं और render पर क्लिक करें
file name फ़ील्ड में एक्सटेंशन को बदलकर avi और target को बदलकर ffmpeg करें
quality को 9 तक बढ़ाएं और render बटन पर क्लिक करें
अब desktop पर जाएं avi फ़ाइल पर राइट क्लिक करें और firefox web browser का उपयोग करके चलाएँ
अब हम टॉय ट्रेन एनीमेशन देख सकते हैं
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
आइए सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने एक toy train को एनीमेट करना सीखा
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है इस ट्यूटोरियल में दिखाए गए चरणों का पालन करते हुए पूर्व असाइनमेंट में बनाई गई बस को एनीमेट करें
आपका पूर्ण असाइनमेंट इस तरह दिखना चाहिए
यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन परीक्षण पास करने पर प्रमाण पत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस फ़ोरम में भेजें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह ट्यूटोरियल इं अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से स्पोकन ट्यूटोरियल टीम के साथ मैं ज्योति सोलंकीआपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद